यह कोई खेल का मैदान दिखाई दे रहा है। जहाँ पे कई सारे बच्चे खेल खेलते हुए नजर आ रहे हैं और एक बगल में स्कूल भी है। साथ-साथ में पानी का टंकी भी दिखाई दे रही है जो काफी बड़ी रंग की है और पीले रंग--

यू.पी और बिहार का बहुत प्रसिद्ध पर्व --

यह एक पानी का दृश्य दिखाई दे रहा है। लग रहा है कि कोई पोखरा है। काफी ज्यादा पानी भारी हुई है। बगल में पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहा है। लग रहा है --

किसी अच्छे गली वली की होगी और --